आ बीच में इस मयदान को डिवाइड किया गया है सफेद रंग की लाइन से एक झंडा लगा हुआ है सामने की तरफ बड़ी-बड़ी बिल्डिंगस बनी हुई है अलग-अलग फ्लोर बने हुए हैं बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हे--

तरफ एक बड़ा सा बोरा है बोरे का रंग औ कुछ एस सफेद ऑरेंज टाइप का है इसके अंदर बहुत सारे गेंडे के फूल रखे हुए हैं।

इन फूलों का रंग कुछ ऑरेंज और पीला है इनका साइज थोड़ा छोटा है पीछे की तरफ ग्रीन कलर के कार्टन नजर आ रहे हैं जमीन के ऊपर फूल पड़े हुए हैं ।